यह एक किताब की दुकान है इसमें बहोत सारी किताबे लगी हुई है ।

ये एक गेस्ट हाउस जैसा है यहाँ पे दो जेंट्स खड़े हुए हैं।

यह एक स्टेट बैंक है स्टेट बैंक के सामने एक जेंट्स खड़ा हुआ है।

बाहों का पेहने हुए है। साड़ी में किनारा भी नीले रंग का बना हुआ है। एक लेडीज --

सामने मेज पड़ी हुई है। उसपे प्रोजेक्ट के कागज रखे हुए है मेज पे किताब कापी भी रखी हुई है। मेज पर एक कैंची भी रखी हुई है।

ये एक ईसामसी का चर्च है। यहाँ पे तीन जेन्स बैठे हुए हैं।